जोकि लाल रंग के हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है के ये गुलाब गुलदस्ते के हैं।

यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ बारह बच्चे हैं जोकि योग कर रहे हैं।